पूरे वातावरण में प्रदूषण देखते हुए पूरे --

उसके एक दुकान है जिसके आगे साइकिल लगे हैं। फिर उसके आगे कुर्सी रखे हैं।

पेड़-पौधे है जमीन पे अच्छी तरह से रंग-बिरंगे फूल लगे हैं।

उसके आगे पीछे तार सितारे लगे हो बल्ब लाइट लगे हुए --

इस गाड़ी अच्छी है लग्जरी लग्जरी सब।

अगर समय पे हम उसको आदमी को नहीं पहुँचाया जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है जिसके कारण --

ये जिम ट्रेनर जिम ट्रेनिंग है जिसमे आपके जिम बॉडी बनता है | यहाँ पे बॉडी बनता है लगा है।

एक शॉपिंग ये शॉपिंग मॉल है | शॉपिंग मॉल पे हर जगह जैसे जैकेट्स शूटर | ठंडी के दिन आगे तो ठंडी के दिनों में स्वेटर जैकेट अच्छे से कपड़े फैंसी सब है |

यह बांगुड़ी मछली है इसके ऐसे दो सामने एक पूंछ होती है एक लंबी सी पूंछ होती है इसके छुने पर बहुत स्लिप मारता है।

रोड है उसके बाद ए उम्म विद्यालय रोड विद्यालय की ओर जा रही है हरी हरियाली है चारों तरफ हरी हरियाली है चारो तरफ एक ऑटो आ रही है।